ये बस्तर डेयरी फार्म है।

क्योंकि यहाँ पे लोटस का पोस्टर लगा है जो एक लोटस एक ब्यूटी क्रीम का --

जो बिजली द्वारा चार्ज होता है इसपे कुछ लोग बैठे हुये हैं और इसके बगल से दो महिलाएं कहीं जा रही है जो हरी और पीली साड़ी में है। ये टोटो बैटिंग चार्जिंग करके चलाता है इसपे आराम से चार आदमी बैठ कर कही भी आ जा सकता है।